यहां पे कंपाउंड के आजू बाजू बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

मैं यहां पे एक बड़ा सा घर देख पा रही हूं।

मैं यहां पे एक जिम देख पा रही हूं।